और उसके अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी का रंग लाल है।

और यह एक मकान के सामने खड़ा होकर फोटो खींच रहा है।

अ पले ओ प्लेट के अंदर कुछ लाइनें बनी हुई है डिजाइन की--

इसके अंदर एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लैक टी शर्ट और ब्लू पैंट पहन रखी है।